और निचे का जो हिसा है वो बहोत सारे कलर्स में कंबाइन किए गए है और ये गयम खाली है सामने एक चेयर रखी हुए है जो ब्लैक एंड रेड की कॉम्बिनेशन में है|